यह एक स्टोर है यह बहुत बड़ा स्टोर है किताब कॉपी का स्टोर है इसमें आदमी बहुत सारा काम कर रहा है।

और फूल से सजा हुआ है और रूम में वेलकम लिख रहा है और एक तरफ--

और ये गाड़ी वाइट है बगल में बहोत सारे पेड़ हैं और इस एक टावर है।

और एक कैप वाला आदमी खड़ा है.

और ग्रीन कलर का बॉक्स रखा हुआ है।

यार बहुत सारे लाइट बर रहा है.